यहाँ पर एक दो मशीन दिखाई दे रही हैं जो जिसके है लम्बे लोहे के ब्लैक कलर के खम्बे लगे हुए हैं।

और चैनल लगा हुआ है। बीच में हल्के नीले कलर का चैनल दिखाई दे रहा है। ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक लेडीज की पिक दिखाई दे रही --

है और इसमें स्वस्थ जल बहता दिखाई दे रहा है और बीच में कुछ लोहे के पाइप एलो कलर के दिखाई दे रहें हैं।

है छत पर जो लाइट लगी हुई है वहाँ पर रेड कलर के गुब्बारे जैसे लगे हुए हैं। उनके बीच में लाइट है एलो कलर का। मशीन कवर दिख रहा है।

यहाँ पर हम देख रहे है कि एक गेट बना हुआ है और इसके साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें ब्लैक कलर का ही कवर से ढ़का हुआ है।

भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेटी हुई दिखाई दे रही है और कुछ व्यक्ति लेडीस खड़े हैं गेट पर। दीवार मंदिर की व्हाइट कलर से --

जो कि कुछ न हल्के एलो में हैं। एलो कलर में बना हुआ है और इस हॉल की जमीन भी एलो कलर्स की हल्की दिख रही है। साइड मे एक व्यक्ति --

रेड कलर की व्हाइट कलर की किरणें पड़ रही है और आसमान भी एलो हल्का रेड पिंक नीला ब्लैक व्हाइट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हम एक नदी देख रहे है जिसके ऊपर से कुछ पानी दिखाई दे रहा है।